गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर पेड़-पौधे भी लग रहें है आगे की तरफ गाड़ियां भी खड़ी हुई है और इतना ओसम लग रहा है यहां से व्यू और आगे की तरफ घर भी है बस --

देख सकते है यहाँ पर अलग-अलग रंग की मैट्स है। ये हमारी अ- बाहर के कमरों में लगती है अंदर मे भी बिछाते ही हैं मैट्स अलग-अलग रंग की है अलग-अलग रेट की भी होंगी ये।

वाटसप गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मॉल सा आएगा आगे की तरफ ये पूरी मार्केट है | यहाँ पर एक लड़की एक लड़के के ऊपर सो रही है और आगे की तरफ एक कोड़ा जा रहा है कूड़े वाली मशीन उठाने वाली मशीन और अंकल एक भैय्या भी जा रहें --

ये कुछ बुक स्टोर है पूरा मतलब समझ लो बुक स्टोर ।

देख सकते है ये शादी का स्टेज है यहाँ पर एक सोफ़ा रखा हुआ है। थोड़ा अच्छा सजा रखा है दूल्हा-दुल्हन के लिए और फूल पत्तियाँ भी लगी रही हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ इतना बड़ा सा लगा रखा है।